एक बुलेट खड़ा हुआ है जिसका कलर व्हाइट और ब्लैक है।

नीचे के जमीन का कलर ब्राउन है।

जहां एक बड़ा बोर्ड टंगा हुआ है।

बोड के ऊपर में बूम फिटनेस लिखा हुआ है।

यह दुकान के बाहर का दृश्य है।

यह रोड के बाहर का दृश्य है।

यह एक मेले का दृश्य है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

मिकीमाउस है जिसका कलर ग्रीन येलो एंड पिंक है।

यह एक रूम का दृश्य है।

इसमें दो खिड़कियां ब्राउन कलर --

यह दुकान के बाहर का दृश्य है जहाँ बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

टेबल रेड कलर का है जिसके उपर ब्लू कलर के बोतल रखे हुए हैं और एक टेबल का कलर ग्रीन है।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

जिसके अंदर बहुत सारे डब्बे हैं एक डब्बे में पिंक कलर का कुछ सामान रखा हुआ है और एक डब्बे में ब्लू कलर का --

बहुत सारी स्टम्प रखे हुए--

रूम में बहोत सारे ए_सी हैं जिनका कलर व्हाइट हैं।

पंखा हैं पंखा का कलर भी व्हाइट हैं।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

लड़की के बगल में एक पेड़ है जिसका कलर हरा है।

यह एक रूम का दृश्य है।

उनके नीचे की जमीन व्हाइट कलर का है।

बगल मे बहोत सारे कृष्ण और राधा की मूर्तियां हैं जो चांदी से बने हुए हैं।

यह एक डैम का दृश्य है।

एक औरत खड़ी है जिसने स्वेटर पहना हुआ है।